यहां पर अम्बेडकर की फोटो लगी हुई है। एक फोटो और लगी हुई है एक मूर्ति भी है बहुत सुन्दर।

एक आदमी खड़ा हुआ है मोटा सा और यहां पर रिक्शे भी धरे हुए हैं चार पाँच और साइकल भी है। यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी है ये देखने में अच्छा है।

यहां पर बोहोत सारी साइकल रखी हुई हैं। अंदर बाहर में एक ग्राउन्ड में बोहोत सारी रंग-बिरंगी साइकल रखी हुई है।

यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। एक दूल्हा खड़ा हुआ है एक कुर्सी भी रखी हुई है। माला बहुत अच्छी सजी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कोई बैग टाॅगे हुए हैं कुर्सी में बैठे हुए हैं।

यहां पर तीन बाल्टी रखी हुई हैं। एक बड़ा सा भगौना रखा हुआ है। एक टैंकर रखा हुआ है।

यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं एक बच्चा मिटा रहा है एक मैडम बच्चे को समझा रही है एक बच्चा सामने को देख रहा है पेन हाथ में लिए हुए --

यहाँ पर चार पांच लड़कियां बैठी हुई हैं। पर रंगोली बना रही हैं रंग से प्लेट में रंग रखे हुए।

यहां पर एक बस है और एक इस बस के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है| बस के चारों तरफ माला लगीं हुईं हैं और नी पीरी कलर की बस है औ काफी मैदान है इधर पर पेंड़ पौधे भी लगे हुएँ हैं।